इस तस्वीर में एक काउंटर दिख रहा है।

यह एक दुकान है जिसके अंदर बहुत से लैपटॉप रखें हुए हैं।

यह एक ऑफिस है। इसके अंदर बोहोत सी खिड़की लगी हुई हैं।

जिसके गेट में एक औरत और कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

और कुछ बच्चे भी है और कुछ आदमी बाहर खड़े हुए हैं।

यह एक फीमेल जनरल वार्ड है जिसके अंदर एक बेड पड़ा हुआ है।

और बेड के पास में एक बोतल टांगने का स्टैंड भी रखा हुआ है।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

यह एक ऑफिस है जिसके अंदर कुछ कांच के खिड़कियां लगी हुई है।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

यह एक तालाब है और इस तालाब में कुछ घास जमा हुआ है।

यह एक दुकान है इस दुकान की दीवार पे बहुत सी पेंसिल टंगी हुई है।

यह एक फॉर्म है और इस फॉर्म के पास में एक आदमी खड़ा है।

और इस फॉर्म की छत टीन से बनी हुई है।

जिसके अंदर एक कुर्सी और एक काउंटर रखा हुआ है।

और इसमें एक बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ है।

जिनके पास में स्टील की ग्रिल लगी हुई है।

और एक महिला खड़ी हुई है और उनके पास में कुछ कुर्सी भी रखी हुई है।

और दीवार पे कुछ तस्वीरें भी लगी हुई हैं।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

और इसके अंदर एक लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है।

और इसके ऊपर लोहे से संगल बांध रखी--

और इसके पास में कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

और बोहोत सी मोटरसाइकिल भी हैं जिनके ऊप कुछ आदमी और औरत बैठी हुई हैं।

और दीवारों पे बहोत सी तस्वीर लगी हुई है और इसके अंदर एक सोफा भी रखा हुआ है।

यह एक बहुत ही ऊंचे पकड़ है और इन पहाड़ों के बीच में पानी बह रहा है।

और आदमियों के हाथ में कुछ बैग भी है और औरत के हाथ में भी कुछ बैग है।

और एक तोलने का कांटा भी रखा हुआ है।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

और इसके पास में एक टेबल भी है जिस पर बहुत सा सामान रखा हुआ है।

और इसके अंदर कुछ पर्दे भी लगे हुए है।